ऊपर आकाश है नीचे पानी है और साइड मे--

और व्हाइट आउटडोर दिया हुआ है।

कस्टमर बैठ के खाना वाना खाते हैं एक टेबल है उसके ऊपर खाना खाने के साधन सामग्री पड़ा हुआ है साइड में डेकोरेट किया हुआ है।

फ्रूट बास्केट में फ्रूट पड़ा हैं यहां पर--

अ गार्डन में हरा घास है घास के साइड में बहोत सारे बच्चों के खेलने की जगह है।

यह एक मंडी है यहां पर--

यहां ग्रीन कलर का ग्रास से कलर का--

रखा हुआ है वहां पे कार भी खड़ी--

यहां पर गैरेज का व्यू है।

उसके उपर एक कंप्यूटर है। पीछे एक घड़ी भी है।

साइड में किताबे पड़ी हुई है किताबो का टेबल भी है।

यह एक डेकोरेट जगह है।

मोबाइल बिक रहे है यहां पर जिओ के फोन भी बिक रहे--

है यहां पर डाइनिंग हॉल मिलते--

यहां पेड़ है पीछे बहुत सारे पेड़ है।

के साइड में म रिक्शा खड़ी है उसके आगे एक आदमी है।

है एक चेयर है साइड में एक विंडो है और एक टेबल भी है।

और कुछ व्यक्ति चल रहे--

थ्री डी पेंटिंग बनाई हुई है।

आसपास पेड़ पौधे भी है बहुत सारे।